और टेबल रखे हुए हैं कुर्सी भी रखे हुई है बहुत सारे सामान दिख रहा है कॉपी पेपर वेपर दिख रहे हैं।

टेबल पर कुछ रखे हुवे ग्रिंच पे कुछ सामान दिख रहे हैं।

यहां पे एक पो पोखर जैसन दिख रहे जिसमें पानी है।

कैलेंडर भी है टी_वी भी है और कुछ लोग है काउंटर पर खड़े है।

कुछ आदमी हैं जिसके थोड़ा सा दिख रहा हैं और घोड़ा भी दिख रहे थोड़ा सा।

पलंग बने हुए है उसका समान भी रखे हुए उसके ऊपर चुनरी-उनरी लगी हुई है पन्नी रखे हुए है घर के ऊपर।

आ रहा है-जा रहा है कुछ लोग बेएक पे बैठे हुए हैं बहोत सारे बाइक लगी हुई है और एक रिक्सा भी लगे हुए दो रिक्सा भी वाला भी है।

यहां पे बहुत बरा हॉल है जिसमें टाइल्स लगी हुई है और नीचे कुछ गिरे हुए बहुत बड़े कुर्सी लगे हुए हैं।

आदमी है एक जो खैनी वैनी मिलाते हुए नजर आ रहे और वो--

और साइकिल सभ भी है और उसके बाद कुछ गोला टाइप के सजाए हुए हैं जिसमें बहोत सारे लाइट वाइट जल रहे हैं।

जिसके छत पे टावर भी दिख रहे हैं और--

यहां पे लैब में ये कंप्यूटर रखे हुए हैं और--

और रेड कलर के कुछ है उसमें सामान सब रखे हुए भी है।

एक मालगेड़ी लगी हुई है और बहुत सारे लोग हैं जो खड़े हैं और बैठने की सुविधा दी गई हैं और--

और बहुत बड़े बड़े बोल जर रहे हैं और लोहा के ऊपर ओभर ब्रिज बनाए हुए हैं और बहुत सारे--